पॉट भी दिखाई दे रहा है जिसमें फूल लगा के है।

ये एक रूम है।

वॉल का कलर जो है वाइट दिखाई दे रहा है और फ्लोर का कलर भी है वाइट दिखाई दे रहा है और छोटा छोटा सा पैकेट लोग भी दिखाई दे रहा--

एक की भी दिखाई दे रहा है और वाल भी दिखाई दे रहा है जो फेंसिंग के लिए बनाया हुआ है और गेट भी दिखाई दे रहा है।

एक रूम के अंदर है जिसमें वॉल का कलर जो है व्हाइट दिखाई दे रहा है।

एक रूम के अंदर है जिसमें बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर गणेश भगवान भी दिखाई दे रहा है और फूल लोग भी दिखाई दे रहा है और किताब लोग भी दिखाई दे रहा है।

पीछे पहाड़ों हैं इसमें बादल व्हाइट कलर का है।

छोटा छोटा घास लोग भी डिखाई दे रहे--

गिट्टी भी दिखाई दे रहा है।

जो लोहा से बनाया हुआ है दुकान का कलर जो है व्हाइट दिखाई दे रहा है।

और घर के सामने बाइसाइकल भी दिखाई दे रहा है।

एक किलों पे दिखाई दे रहा है।

सब्जी बिक्री करके औरत लोग भी दिखाई दे रहा है एक औरत जो आगे आगे दिखाई दे रहा है।

ये एक दुकान के बाहर है जिसमें एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

नीचे घास दुब दिखाई दे रा ह--